एनहियों कुल काम करत रउहन जा मजदूर होवन जा कुल जना --

पेटी लगइले बड़िनचूड़ी पहिनले बड़िनकान में के पहिनले बड़िन अच्छा से कुल नाचत हइन जा।